थोड़ा दूर में एक घर दिख रहा है।

इस स्कूल का नाम ग्रीनव्हिच स्कूल है।

एक टेबल भी लगा हुआ है।

दुकान में एक फ्रिज भी रखा हुआ है दो कूड़े का डब्बा है।

इसमें बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

पेट्रोल पंप के साइड में एक पेड़ लगा हुआ है।

यश का कलर व्हाइट है उसमें रेड कलर से प्लस का चिन्ह बना हुआ है और साइड साइड ऊपर में भी किया हुआ है।

यह फोटो एक बस स्टैंड का है जहां पे एक बेस बस खड़ी है।

इस बस में जय माता दी लिखा हुआ है।

इयररिंग्स भी साइड में रखे हुए हैं।

बच्चों के पीछे एक दीवार है जिसका कलर व्हाइट है।

तीन मंजिले का एक दुकान है।

इसमें दो व्यक्ति दिख रहे हैं जो छेनी हथौड़ी लेके अपना काम कर रहे हैं एक घर में--

इस फोटो में एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

दो बच्चे बैठे हुए है।

थोरा दूर में भी एक आदमी खड़ा है।